दो तीन टावर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है उसके आसपास कुछ बर्तन रखे हुए--